यह एक घर का फोटो दिख रहा है जिसमें कुछ एक कुर्सी रखी हुई दिख रही है।

इसमें एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जिसमें बोहोत सारी बसें खड़ी हुई दिख रही हैं।

ये एक कोई पुराना किला दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर चार नंबर का एक पोस्टर टंगा हुआ है।

इसमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं।

जिसमें चार खम्मे ऑरेंज कलर के बने हुए हैं।

इस फोटो में एक ए_टी_एम स्टेट बैंक का दिख रहा है।

एक कुर्सी डली हुई दिख रही है एक आदमी बाहर बैठा हुआ दिख रहा है।

एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें दो हिरण खड़ी हुई दिख रही हैं।